गेट को जाम किया जा रहा है। यहां घर है ग्रिल लोहे का है। घर बन ही रहा हैजो पेंट करने के बाद --

भी है इसलिए इसको रखा होता होगा एक बाइक ढका हुआ है शर्ट खोल के रखा हुआ है आ घर के आगे एक हरा पानी का नहर है।

तीन-चार दुकान ऐसे ही एक लाइन से है और मार्केट के बगल से रोड गया हुआ है जिसमें आप --